गार्डन बा| ओमे घर बा पूरा और पूरा हरियाली बाटे चारो तरफ और पेड़ पौधा बा

एगो बोर्ड बा उपर चिपकावल बाटे कुछ क्लास बा लोग बाटे बिच में कुर्सीमेज टेबल पानी की टंकी --

सब भगवान के मूर्ति ह | अ सजावट खूब मस्त भईल बा और चारो तरफ लोग बा --

हलत सब रखल बा एगो मेज ब.. कुर्सी बा टेबल बा अरु सीसा बा झाल.. --

बैटरी वाला खड़ा बा। रिक्शा के आइस क्रीम के दुकान बा।